एक यो द्वीप दिखे है आ पर एक जहाज दिखे है जहाज के ऊपर यो रोक--

एक मिठाई की दुकान है लाडू पड़या है मखाना पड़या है बूंदिया कचोरी --

भई एक घर के बाहरे रेलिंग लागी हुई है बांके साइड मे एक मंदिर है भ अ ई दूसरी साइड मे एक गेट लाग रहियो है बा पिछन एक घर बण्यो होवे दोपहर को मौसम हो रहियो है टाईला लाग रही है।